कराही भी है तेल भी है और इन्वेटर भी बैटरा भी और बर्तन रखने का स्टैंड भी है फ्रिज --

बहोत सारी खाने की चीजे भी रखी है और शीशे भी लगे हैं पोस्टर भी लगे हैं।